लोखंड का का लोखंड का जाली है झाड़ है।

उनका मुकुट हैं फूल हैं उनको मा फूलों का माला चढ़ाया हुआ हैं दो औरत हैं ।